यह एक म्यूजियम है। यह म्यूजियम में बहोत-सी सामान पुरानी सामान रखी जाती है। यह म्यूज़ियम में लोग घूमने के लिए भी आते हैं क्योंकि यह म्यूज़ियम में पुरानी चीजें देखने को मिल जाती हैं।

यह एक तालाब है। यह तालाब बहुत बड़ा तालाब है। यह तालाब में बहुत पानी है। यह तालाब के किनारे बहुत घर बसा हुआ है और दूसरी तरफ बहुत जंगल झाड़ बने उगे हुए हैं।

यह एक स्वीप डिज़ायर कार है। यह स्विफ्ट डिज़ायर कार में बहुत से लोग --

यह एक स्टेज शो प्रोग्राम है। यह स्टेज शो प्रोग्राम में बहुत से बच्चे डांस दिखा रहे हैं।

यह एक नदी है। यह नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है। यह पुल में लोग पार होते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी पार किया जाता है।